यह बसों की लाइन बाँधी गयी है | यह सब अपनी अपनी रुट में प्रत्येक दिन जाती है |

यह एक जॉकी कंपनी का मॉल है।

यह एक दुकान है यह दुकान का ओपनिंग कुछ दिन पहले हुआ है।